यह एक साइकिल का दुकान है जिसमें अलग अलग प्रकार की साइकिल रखी हुई है।

यहां स्कूल तक घुसने के लिए रास्ता भी बनाया गया है।

सभी बच्चों के टेबल के ऊपर कॉपी किताब है।

आसमान इब्द एकदम साफ दिखाई दे रहा है।

यहां एक नोटिस बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

उसके ठीक सामने चाइनीज फास्ट फूड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने एक गेट दिख रहा है जो मंदिर जाने के लिए चौथा नंबर गेट है।

यह एक नर्सरी है जिसमें छोटे छोटे और पौधों पर फूल दिखाई दे रही है।

जैसे आलू प्याज पत्ता गोभी पीछे की दीवार पर दो ए_सी लगी हुई है।

यहां कुछ लड़के खड़े हुए हैं तो कुछ लड़के एवं लड़कियां बैठे हुई हैं।

पीछे बहुत जायदा थर्माकोल की डब्बे रखे गए हैं।

यह एक मस्जिद की तस्वीर है जिसमें कुछ लोग इस बार की इबादत करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर दो लाइटें टंगी हैं।

यह किसी मैरिज फंक्शन की तस्वीर है।

ऊपर बैठने के लिए शीट बनाई गई है जिस दो आदमी खड़े हुए और दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहा है।